यह बस स्टैंड है जहां बहुत सारा बस खड़ा है।

यहां नीचे एक कपड़ा रखा हुआ है।

दो बहुत बड़ा शोरूम है यहां बहुत सारा आदमी खड़ा है।

ऊपर में लोहा का बहुत बड़ा बड़ा खंभा लगा हुआ है।

यहां एक आदमी सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यह बहुत बड़ा बागान है बहुत सारा पेड़-पौधा लगा हुआ है।

नीचे बहुत सारा गमला भी रखा हुआ है।

एक आदमी सफेद कलर का शर्ट और काला कलर का जींस पहना हुआ है।

नीचे एक काला कलर का बिछाया हुआ है।

बहुत बड़ा हाल है।

आगे में आसमान पूरा सफेद है।

पीछे बहुत सारा सूखा पत्ता भी है।

जो बहुत बड़ा रूम है यहां एक टेबुल पे एक लैपटॉप रखा हुआ है।

बहुत बड़ा हाल है।

साइड में एक पंखा दिख रहा है एक सफेद कलर का कार लगा हुआ है।

यहां साइड में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रहा है।

यह बहुत बड़ा होटल है।

एक बैग भी एक टेबुल में रखा हुआ है और पानी का बोतल भी है।

गोदरेज काठ का बना हुआ है बीच में कांच का शीशा लगा हुआ है।

आदमी बहुत सारा पेड़ पौढा है।

यहां दो स्कूटी खड़ा है एक स्कूटी सफेद कलर का है।

बहुत बड़ा दुकान है बहुत सारा साइकिल रखा हुआ है।

यह राजेंद्र आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान रांची है।

यहां बाहर में बहुत सारा बाइक स्कूटी लगा युवा है।

हरा कलर का बाल्टी रखा हुआ है।

बहुत सारा पेड़ पौधा है जिसमें फूल फूला हुआ हैं।

साइड में बहुत सारा हरा भरा घास भी है।

बहुत बड़ा शोरूम है जिसमें बहुत सारा स्कूटी लगा हुआ हैं।

यहां बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है जो ब्लू कलर का है।

साइड में एक खंबा जो लाइट का है।

इस मछली के ऊपर में सफेद सफेद निकला हुआ है।

इसमें बहुत सारा पीला लगा हुआ है।